यहां पर ढेर सारे ऑटो वाले हैं।

कार का दोनों दरवाजा खु खुला हुआ है।

मस्जिद के सामने एक बड़ा सा गेट है।

सफेद और हरे में है।

यहां पर ईटे का कुछ बना हुआ है।

यहां पे एक सफेद कलर का दीवाल है।

यहां पे लंबी लंबी पेड़ लगी हुई है।

मंदिर के बीचो बीच लाइट लगा हुआ है।

यह एक बुक सेलर की दुकान है।